पार्क में कुछ हरी घास खड़ी है।

वहां पर एक खंभा भी गड़ा हुआ है।

यहां पर पिछली साइड एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

और यहां पर फलों की रेहड़ी भी लगी हुई हैं जिसके पास में दो आदमी खड़े हुए हैं।

यहां पर कुछ काउंटर पर भेगोने और गिलास रखे हुए हैं।

सोफो के पास मे हमें एक कैम्पर भी दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें एक आदमी दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक सौरऊर्जा प्लेट रखी हुई है।

यह ए बहुत बड़ा तालाब है।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

बस स्टैंड पर एक आदमी भी बैठा हुआ है।

और कुर्सियों पर एक आदमी सोया हुआ है।

यहां पर कुछ लाइट भी लगी हुई है।

एक आटो खड़ी हुई है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है।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

मैदान में कुछ आदमी खड़े हुए हैं और कुछ बैठे हुए हैं।

और यहां पर एक कांटा भी रखा हुआ है।

सोफे के पीछे कुछ पर्दे टंगे हुएं हैं।

जिसमें सकरी भर रखी है।

और यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

उस दुकान में कुछ लकड़ी के बॉक्स बने हुए हैं।

जिनमें धूमबत्ती और अगरबत्ती और कुछ बिस्कुट रखे हुए हैं।

और यहां पर कुछ ड्रिल मशीन भी रखी हुई है।

और इनके समाने पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और सामने कुछ ऊर्जा बैटरी भी लगी हुई है।

इस चित्र में हमें कुछ रिक्शा दिखाई दे रही है।

और यहां पर पिछली साइड कुछ लाइट भी लगी हुई है।